एक टेंपो रखा हुआ है।

इन टायरों को कलर करके सजाया गया है।

तलाब के चारों तरफ भरी भरी घास उगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें मॉल् दिखाया गया है।

दो दरवाजे खुले हुए हैं और एक दरवाजा बंद है।

पार्किंग में दो बस खड़े हुए हैं।

बहोत सारे पेर पौधे लगे हुए हैं।

रोड का कलर ब्राऊन है।

इस इमेज में एक डेयरी शॉप दिखाई गई है।

एक काले कलर की बकरी ग्राउंड में खड़ी है।

सामने वाली बॉर्डर पे नो पार्किंग का साइन है।

इस इमेज में हमें दो बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

सफेद कलर की गाड़ी खड़ी है।

फ्लोर का कलर रेड है।

इस तस्वीर में हमें एक आदमी दिखाया गया है।

इस इमेज में हमें एक रेलवे स्टेशन का इमेज दिखाया गया है।

पेट्रोल पंप का नाम इंडियन ऑयल है।

नीचे जमीन पे बहोत पानी लगा हुआ है और सामने के तरफ एक बड़ा पेड़ है।

हरे पेड़ के नीचे एक टेंपो रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दो घर दिखाई दे रहे हैं।

नदी में एक शिप हमें दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ जेरॉक्स मशीन रखा हुआ है।

एक टेबल फैन नीचे में रखा हुआ है।

भिंडी और प्याज भी रखे हुए हैं।

कुछ लोग झूला झूलने के लिए रुके हुए हैं।

पोस्टर पे नीलाचल बुक सेंटर लिखा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ लोग पौधे लगे हुए हैं।